काटने वाला नीचे एक धागा बंधा हुआ है।

एक लड़का चेयर पे बैठा हुआ --

पाइप से उसकी गर्दन निकाल लाए एक मैंकेनिक --